यहां पे एक पाइप भी दिख रहा है।

इसके ये जो फ्लोर है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है।

और यहां पे दो चौंगे भी दिख रहे हैं यहां पे लोहे से घिरा हुआ एक पौधा भी दिख रहा है।

और छोटी छोटी कंकड़े दिखाई दे रही है।

ये एक स्कूल है यहां पे एक सिस्टर खड़ी है और यहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि टेस्ट दे रहे हैं यहां पे प्रैक्टिकल हो रहा--

एक ब्लू कलर की है एक बैगनी कलर की है एक ग्रीन कलर की है और एक मैरून कलर की है।

बहुत सारे व्यक्ति हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं सामने में एक व्यक्ति दिख रहा है जोकि वो टोपी पहना है।

यहां केले का पेड़ भी दिख रहा है।

इसके अगल बगल में भी बहोत मंदिरे दिख रही है।

इसके बगल में बहुत सारे सामान टंगे हुए दिख रहे हैं।

के बगल में एक अह घर है यहां पे एक ओल्ड लेडीज बैठी हुई है।

और दो बेसिंगे में लगी हुई हैं और दो नलें भी दिख रही है।

और यहां पे बहुत सारे नीचे भी बैठी दिख रहे हैं।

और घासें भी दिख रही है।